और बाहर हरियाली ही हरियाली है।

यहाँ पर काफी अच्छा डेकोरेटन किया गया है और--

मिरर में दिख रहे लोगों में से दो लोग--

साइड में डंबल और भी अन्य मशीनें रखी हुई हैं।

डेकोरेशन बहुत ही प्यार किया गया है।

चारों तरफ लाइट ही लाइट है बाहर एक कार खड़ी है अंदर एक ऐ_सी लगी है कैफे के अंदर।

और बहोत कुछ बोर्ड में दिखाया गया है।

यहां पर एक कार भी है जो --

ब्लू टीशर्ट में लड़का बाहर खड़ा हुआ है।

साइड में कुछ लोग चलते हुए दिख रहे हैं।